बहुत सारे लोग आदमी दिखाई दे रहे आ इस तस्वीर में।

और पत्थर के सेलिंग दिखाई दे रहे हैं पत्थर के शिवलिंग दिखाई दे रहे है।

कांच के ग्लास में रखी हुई है।

बोहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं अशोक के।